गेट के बीच में दो गणेश जी की मूर्तियां भी बनाई गई हैं।

जिसके आगे एक माइक और एक स्टेज लगा हुआ है।

इस दृश्य में मैं बहोत सारी पंडितों को देख पा रही हूं।

इनके बगल में एक एक बैग रखा गया है।

पीछे की तरफ मैं कुछ लोगों को भी देख सकती हु।